पोस्टर भी लगा हुआ है और एक रोड दिखाई दे रही है और एक बाइक भी दिखाई दे रही है।

इस फोटो के अंदर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

पोस्टर भी दिखाई दे रहा है और पेड़ पौधे बहुत ही अच्छे हैं।

जिसमें तीन चार पाई दिखाई दे रही है और एक कूलर भी दिखाई दे रहा है।

एक प्लेट दिख रही है जो जिसके अंदर ब्लैक कलर के दो स्पून दिख रहे हैं

जिसके अंदर एक व्यक्ति सामान खरीदता हुआ दिखाई दे रहा है।

इस फोटो के अंदर स्टेट बैंक ए_टी_एम लिखा हुआ दिख रहा है।

इस फोटो के अंदर एक बहुत बड़ा गार्डन दिख रहा है।

और बहुत सारे लोग मोबाइल में कुछ देख रहे हैं।